जन की दगड़ियों फोटो मा जी आप देख सकदें कि यख मा जी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ि छन लगीं।

जनकि दगड़ियों फोटो मा जी आप तें दिखेण लग्युं कि एक बहोत ही बड़ु सफ़ेद कलर कू एक हरया भवन छा या संस्थान छा।

फोटो मा जी आप तैं हरयूं - भरयूं होलु दिखेणे कू मिलनु जा का बीच मा जी आप तैं --

जै का पिछाड़ी बिटिन आप तें कुछ डाला होला दिखेण क मिल लग्यां।

दगड्यौ फोटो जे आप देख सकदें की यख मा एक तालाब छ पाणी कु याँ का पिछाँड़ि बिटिन आपते एक दिवार हुवेळी दिखणी जु कि नीली कलर की छ।

दगड़ियों फोटो मा जी आप देख सकदे की यख मा जी एक बहोत ही बड़ु मैदान छा जांका पिछाड़ी बीटिन आप त हरयां भरयां पेड़ पौधा होला दिखेणा।

जांका ऐंच बिटिन आप तैं एक नाव भी होली दिखेणी जू की नीली कलर की छ।

अगाड़ी बिटिन आप तें सीढ़ी दार ढोखरा होला दिखेण लग्यां और हरयां भरयां पेड़ पौधा होला दिखेण क मिल लग्यां।